और यहां पर बहोत सारे आयरन की रॉड है और कुछ बहुत दूर में रखे हुए हैं।

और यहा पर बहोत सारे लाइटिंग्स ऑन है और यहां पर दीवाल लगी हुई है और वहां पर खिड़कीया भी है।

और वह खिड़की के आजू बाजू में कुछ टिविस और कुछ टेबल्स रखे हुए हैं।

और वहां कार के बाजू में कुछ स्कूटी और बाइकस और साइकिलस रखी हु--